आपको बड़ी बड़ी मशीने रखी दिखाई दे रही है आपको अ वजनदार डंपर रखे हुवे नजर आ रहे है कैमरा लगे दिखाई दे रहे है।

यहा आप देख सकते है आपको यहा पर किसी चीज़ की फसल उगी हुई दिखाई दे रही है यहा दो तरह की फसल हुगी हुई नज़र आ रही है आप देख सकते है बड़े-बड़े पत्ते की फ़सल दिख रही है।

आप यहा देख सकते है आपको टेबल कुर्सिया रखी हुई दिखाई दे रही है एक एलेक्ट्रोनिक काटा नज़र आ रहा है एक मशीन रखी हुई नज़र आ रही है आपको एक हण्ड्वॉश नज़र आ रहा है।

ऑफिस की एक दीवाल पर आपको गुड लाइफ लिखा नजर आ रहा है यहा आपको एक टेबल खुर्शी और टेबल पर फाइल रखी हुई दिखाई दे रही है।

सकते है हॉटल काफी खुबसूरत बनी हुई है यहा आप देख सकते है होटल मे आपको नीले रंग के काँच लगे हुए नज़र आ रहे है ह अ--

आप देख सकते है यह मूर्ति खड़ी नजर आ रही है जहा आपको एक हाथ इनका जेब मे डला हुआ नजर आ रहा है।

इस फोटो मे आप देख सकते है आपको एक फ्रूट का ठेला नजर आ रहा है जहा आप देख सकते है आपको अलग अलग तरह के फ्रूट नजर आ रहे है।